है ये लोदी गार्डन है जहां है एक है अ टॉम्ब सा बना है जिसके कई ह दरवाजे हैं।

कुछ सीढ़ियां हैं और कुछ छोटे पौधे लगे हैं काफी हरियाली हैं।

कुछ स्कूटर पे सवार हैं एक पुरुष ने हेलमेट पहना है।

यह रंग महल रेडफोर्ट दिल्ली में मशहूर जगह है।

यह एक ज्वेलर्स की दुकान है जहां पे एक पुरुष टेबल के पास खड़ा है।

एक सफेद रंग की है जबकि दूसरी ग्रे कलर की है ग्रे रंग की है।

जहां कई सोने के सेट रखे हैं।